यह एक बिल्डिंग का कड़िया काम चालू है इसके अंदर कई सारे मजदूरों काम कोर रहे है।

एक शादी का फंकशन लग रहा है जिसके अंदर कई सारे लोग आए हुये हैं।

यह एक औटो का एक शोरूम लग रहा है उधर दो ऑटो रखे गए हुए हैं।

एक आदमी हैवो उल्टा सोया हुआ हैउसने एक हाथ मे घड़ी पहनी है और तीन उंगली मे अंगूठी पहनी हुई हैं।

यह एक नाटक जैसा लग रहा है एक बड़ा स्टेज लगाया हुआ है। स्टेज के ऊपर एक आदमी के हाथ मे गिटार है वो गाना गा रहा है।

है दो लोग एक ने टी शर्ट पहनी है। एक ने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी हुई है |

एक बैंक का बोर्ड दिखाई दे रहा है जो बैंक बंद लग रही है। उसके पास एक साइकिल पड़ी हुई है और कोको-कोला का पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

दो मशीन दिखाई दे रहा है। कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं ब्लू कलर से कुछ नोटिस भी लगाया हुआ है।

इसमे बच्चे औरतें भी दिखाई दे रही है छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे है। सारे लोग दर्शन कर रहे हैं।